यह एक अच्छी तरह से सजावट की गई है यह एक कमरा है यहाँ पर किसी का मकान बना हुआ है यहाँ पर फूल और मालों से--